यहां पर एक जू दिख रहा है।

उसमें एक बड़ा सा जो डंडा जिस पर लटकाया गया है तिरंगे को उसका रंग--

एक फ्रिज जो दिख रहा है वो स्टील ग्रे कलर का है और जो ए_सी दिख रहा है वो वाइट कलर का है।

सामने एक मिट्टी जल रही है भट्टी जल रही है।

पीरा और नीला दिख रहा है एक जो दूसरा है उसका कलर चॉकलेट नजर आ रहा है।

और अह हेलमेट भी ले रखा है जो ब्लैक कलर का है काले रंग का है।

जिसमें किताबें रखी हुई हैं अं कुछ डब्बे रखे हुए नजर आ रहे हैं जिनका ढक्कन चॉकलेट कलर का है।

यहां पर एक बड़ी सी दुकान दिख रही है जिस पर दीपक गुप्ता टी --